प्लास्टिक की बाल्टियां दिखाई दे रही हैं बास्केट्स से दिखाई दे रहे हैं।

प्लीज के पैकेट्स दिखाई दे रहे हैं।

ये एक शोरूम दिखाई दे रहा है शोरूम में बहोत बड़ा कांच का दरवाजा दिखाई दे रहा है।

बहोत बड़ा अ अलमिरा दिखाई दे रही है।

नीचे फ्लोर दिखाई दे रहा है और विंडोज दिखाई दे रही हैं।

दीवार दिखाई दे रही है दीवार पे शीशा लगा हुआ है।

यहां पर चेयर दिखाई दे रही है एक आदमी दिख रहा है जो--

कारपेंटर का काम कर रहा है और बहुत सारे लकड़ी के पीसेज दिखाई दे रहे हैं।

छत भी दिखाई दे रही है नीचे फ्लोर दिखाई दे रहा है।

और दरवाजे दिख रहे हैं पेड़ दिखाई दे रहे हैं आसमान दिखाई दे रहा है।

और चटाई दिखाई दे रही है चटाई के ऊपर एक पॉलीथिन रखा है।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

छत दिख रही है छत पे पंखे दिख रहे हैं और सीमेंट के बड़े बड़े पिलर दिख रहे हैं।

चर्स दिखाई दे रही हैं काउंटर के ऊपर टिफन बॉक्स दिखाई दे रहे हैं।

यह एक मंदिर दिखाई दे रहा है। मंदिर में बहोत सारी चट्टान दिखाई दे रही है। भगवान की तस्वीरे दिखाई दे रही है।

बिजली की तार दिखाई दे रही है पेड़ दिखाई दे रहे हैं आसमान दिखाई दे रहा है।

स्ट्रीट लाइट्स दिख रही हैं मंदिर के ऊपर झंडे दिख रहे हैं।

और यहां पे एक्वेरियम भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर एक लोहे का स्टैंड दिखाई दे रहा है।